जिसके ऊपर व्हाइट कलर का बोर्ड लगा है और लाल एवं नीले रंग से लिखा हुआ है कुछ माला टंगी है सामने कुछ केवल टंगी हुई है।

एक बुक्स सेमिस्टेशनरी की दुकान दिखाई दे जिसपे लाल एवं नीले कलर में लिखा हुआ है ऐ नीचे कुछ किताबे टंगी हुई है उसके गे-नीले कलर का गेट लगा--

हुआ है सामने एक केबल खींच रही है।